tagging in git पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
इस tutorial के अनुसरण के लिए:
अब tagging के बारे में सीखते हैं
* tagging एक commit stage को इम्पॉर्टेंट यानि महत्वपूर्ण mark करने में उपयोग होता है
भविष्य के सन्दर्भ के लिए हम एक commit को bookmark की तरह tag कर सकते हैं
विशिष्ट रूप से यह project का release point mark करने में उपयोग होता है जैसे v10
tags दो प्रकार के होते हैं:
पहले मैं दिखाऊंगी कि lightweight tag कैसे बनाते हैं
अब अपने git repository mywebpage पर जाते हैं जो हमने पहले बनाया
terminal पर वापस जाएँ और type करें: cd space mywebpage और enter दबाएँ
प्रदर्शन के लिए मैं html files उपयोग करना जारी रखूँगी
आप अपनी पसंद का कोई भी file type उपयोग कर सकते हैं
अब git log check करते हैं टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
इस समय हमारे पास हमारी रिपॉज़िटरी में तीन commits हैं जैसे कि added colors added history html और initial commit
अब मैं नवीनतम commit added colors में एक lightweight tag बनाऊंगी
जब हम एक tag बनाते हैं तो default रूप से यह नवीनतम commit में बनाया जाएगा
type करें: git space tag space v11 और enter दबाएँ
यहाँ मैं tag name में v11 दूँगी आप अपनी पसंद का कोई भी name दे सकते हैं
आप निम्न टाइप करके tag tag सकते हैं git space tag और enter दबाएँ
अब हमारी रिपॉज़िटरी में केवल एक tag है
आगे सीखेंगे कि एक annotated tag कैसे बनाते हैं
पहले प्रदर्शन के लिए मैं mypage html फाइल में कुछ संशोधन करुँगी
type करें: gedit space mypage html space ampersand और enter दबाएँ add file में कुछ लाइनें जोड़ते हैं
फिर file को सेव और बंद करते हैं
अब इस point पर अपने काम को commit करते हैं
type करें: git space commit space hyphen a m space double quotes में added content in mypage html और enter दबाएँ
अब मानिए कि यह विशेष stage project के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
अतः हमें इस commit point पर एक tag बनाना है
यहाँ हम एक annotated tag बनायेंगे
type करें: git space tag space hyphen a space v12 space hyphen m space double quotes में my version 12 और enter दबाएँ
m flag उपयोग करके आप अपनी पसंद का कोई भी tag message दे सकते हैं
यहाँ tag message वैकल्पिक है
tag सूची देखने के लिए type करें: git space tag और enter करें अब हमारे पास दो tags हैं
यहाँ v11 lightweight tag है और v12 annotated tag है
how tags के बीच अंतर कैसे करते हैं
हम git show command उपयोग करके दो tags के बीच अंतर देख सकते हैं
type करें: git space show space v11 और enter दबाएँ
यहाँ हम lightweight tag v11 का पूरा विवरण tag सकते हैं
यह केवल commit का विवरण और file के बदलावों को दिखाता है
आगे हम annotated tag v12 का विवरण देखेंगे type करें: git space show space v12 और enter दबाएँ
यहाँ हम देख सकते हैं:
annotated tag की हमेशा सलाह दी जाती है जब आप सहयोग से कार्य करते हैं
अब सीखते हैं कि पुराने commits में एक tag को कैसे mark करते हैं
पहले हम git log check करेंगे टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
अब उदाहरण के लिए मैं अपने दूसरे commit added history html में एक tag बनाना चाहती हूँ
type करें: git space tag space hyphen a space v10 space फिर added history html के commit hash को copy और paste करें space type करें: hyphen m space double quotes में my version 10 और enter दबाएँ
हम tag देखने में सक्षम होंगे जो हमने अभी बनाया टाइप करें git space tag और enter दबाएँ
आप यहाँ बनाया हुआ tag v10 tag सकते हैं
आगे हम सीखेंगे git log के साथ tags कैसे देखते हैं
type करें: git space log space hyphen hyphen oneline space hyphen hyphen decorate और enter दबाएँ
आप tag के नामों के साथ git log tag सकते हैं
अब हम अनावश्यक tag को डिलीट करना सीखेंगे
मानिए मैं tag v11 को डिलीट करना चाहती हूँ
type करें: git space tag space hyphen d space v11 और enter दबाएँ
यह message deleted tag v11 और इसका commit hash दिखाता है
हम check करेंगे कि tag डिलीट हुआ है या नहीं
type करें: git space tag और enter दबाएँ
अब हम tag v11 नहीं tag सकते जैसे कि यह सफलतापूर्वक डिलीट किया गया है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आते हैं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
एक नियत कार्य में
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है